इस घर के बाहर सफेद रंग का चेयर है।

इस फोटो में आगे से एक घर का व्यू दिख रहा है जिसका कलर येलो गोल्डन ब्ल्यू वाइट रेड और ब्लैक है।

इस फोटो में एक जगह का नजारा है।

सामने बहुत सारा लंबा लंबा पेड़ है।

उसके सामने दो स्टील के मग है।

और उसका साइत में और एक छोटा गोल्डन कलर का घर है जिसका ग्रिल लॉक है।

ये एक मशीन का दुकान है।

और सामने चार इंसान दिख रहा है।

अंदर दो कस्टमर खड़े है।

इस फोटो में एक आदमी है सेल्फी लेते हुए।

उस रिंग से पानी निकल रहा है।

बहोत सारे टेबल और चेयर हैं।

इस ग्राउंड में छोटे छोटे घास है।

इस बिल्डिंग का बाहर के रास्ता ईटा से बना हुआ है।

जिसके ऊपर एक साइनबोर्ड है और उसमें हिंदी से लिखा हुआ है।

और पीछे बहुत सारे आदमी है जो ऑरेंज कलर का कपड़ा और येलो रंग का टोपी पहना हुआ है।

और सामने एक लाल रंग का गाड़ी है।

इस फोटो में एक बड़ा सा नदी का नजारा है।

इस फोटो में एक पुरानी स्कूल दिख रहा है।

वहां तीन लोग जा रहे हैं जो लाल ग्रीन और ब्ल्यू रंग का कपड़ा पहना हुआ है।